ये चित्र मा हमते बड़ी दुकान कर छा दिखेण लगीं जैका भैर बिटि बड़ी बड़ी मेजन लगीं जूं फर हमते भोत सारा माछान दिखेण लगयां।

ये चित्र मा हम तैं एक बड़ु गेट च छ दिखेण लग्युं जू लाकड़ा कू छ बणयु वह का निशान एक और गेट छ लग्युं जू लोहा कू छ।

ये चित्र मा हम तें बड़ु कमरा कर दिखेण लग्युं दिखेण सी वे एक क्लास च लगणी जफणा हम तें भोत सारा मेज कुर्सी दिखेण लगीं अगाड़ी हम तें एक बड़ु बोर्ड छ दिखेण जै कु भोत लम्बू छा।

जै के पैथर एक नौनियाल छ बैठ्युं जु कोफ़ी पर कुछ लिखण छ लग्युं भैर फणा हम तें एक मुंडस्यारू छा दिखेण लग्युं और एक बैरवान छा दिखेण लगीं।

ये चित्र मा हम तैं बहुत सारी मेज कुर्सियां दिखेण लगीं जू का सफ़ेद कपड़ा छन डाल्यां ओर-पोर हम तैं बहुत सारा लोग छन दिखेण लग्यां।

यफणि हम तैं बहुत सारी बाइक भी खड़ी छन दिखेण लगीं अगाड़ी बिटि हम तैं एक बडु बोर्ड छ दिखेण लग्युं और किनारा भी हम तैं एक बडू पोस्टर छ दिखेण लग्युं।